बैठ ने लिए कुर्सियाँ दिख रही है लाइट के खम्बे लगे हुए है हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

बाहर कि तरफ डम्मी ने कपडे पेहन के रखे है अंदर भी बहोत सारे रंग बे रंगी कपडे दिखाई दे रहे है |

यहा एक खेत का चित्र है यहा पर बहुत ज्यादा हरियाली है।

यह चित्र एक खूबसूरत मंदिर का है जहाँ-अ जिसके पिछे एक सफेद बादल दिखाई दे राहे है मंदिर में बाहर कि तरफ भगवान कि मूर्तीया है।

यह एक जगह का चित्र है यहा पर दो कुर्सिया दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है चारो तरफ लाइट दिखाई दे रही है।